कुछ सफेद कुछ पीला कुछ बैंगनी तो कुछ गुलाबी फूल रखे हुए हैं। ये फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।

यहा पे कई बच्चे बेठे हुए है जिन्होंने अपने पैरों के अंगूठो को आपने हाथों से पकड़ा हुवा है जो एक प्रकार का योगा है ।

एक पार्क है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहां पर अलग-अलग प्रकार के फूल लगे हुए हैं यहां पर बहुत सारे फूल और पेड़ पौधे भी ल --